यह दृश्य एक मछली के मास का है |

ये देखिये फूलो की माला लगी है और उसके --

ये फोटो हमे ये बता रही है की किसे --

इस फोटो में ये दिखाया दिखाई दे रहा है |

फिश के दूसरी तरफ सफ़ेद रंग का एक गेट बना हुआ है।